यह दृश्य किसी पार्क का दृश्य है इसमे बहुत सारे बच्चे तरह-तरह के झुलो पर खेल रहे हैं और कुछ लोग बच्चो को झूला-झूलवा रहे हैं।

जिसके किनारे से एक सड़क गुजरी हुई है।

यह दृश्य एक इस स्कूल के क्लास रूम का है जिसमे दो टीचर कुर्सी पर बैठे हए कुछ कागज पर लिख रहे हैं।